C में इनहेरिटेंस के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे इन्हेरिटेन्स इन्हेरिटेन्स के प्रकार हम यह उदाहरणों की मदद से करेंगे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
जब एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य की प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है तो इसे इनहेरिटेंस कहते हैं
यह मौजूदा क्लास को बिना संशोधन किये पुनः प्रयोग करने की प्रक्रिया है
इन्हेरिटेन्स के प्रकार सिंगल लेवल इन्हेरिटेन्स मल्टीपल लेवल इन्हेरिटेन्स हाइरार्किकल इन्हेरिटेन्स मल्टी लेवल इन्हेरिटेन्स और हाइब्रिड इन्हेरिटेन्स पहले हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बारे में जानते हैं
बेस क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज़ यानि विशेषतायें और फंक्शनैलिटीज़ यानि कार्यात्मकताएं होती हैं
इसे पेरेंट क्लास भी कहते हैं
इसमें वे समान विशेषतायें होती हैं जिन्हे सारे ऑब्जेक्ट्स इन्हेरिट यानि प्राप्त कर सकते हैं
डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास है
डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की विशेषताओं प्रॉपर्टीज़ और कार्यात्मकताओं फंक्शनैलिटीज़ को इन्हेरिट करता है
अब देखते हैं सिंगल लेवल इन्हेरिटेन्स क्या होता है
सिंगल लेवल इन्हेरिटेन्स में सिर्फ एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास की ज़रुरत होती है
मल्टीपल इन्हेरिटेन्स मल्टीपल इन्हेरिटेन्स में डिराइव्ड क्लास एक से अधिक बेस क्लास से इन्हेरिट करता है
हाइरार्किकल इन्हेरिटेन्स हाइरार्किकल इन्हेरिटेन्स में मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेज़ एक बेस क्लास से इन्हेरिट करती हैं
मल्टी लेवल इन्हेरिटेन्स मल्टी लेवल इन्हेरिटेन्स में सब क्लास अन्य क्लासेज़ के लिए बेस क्लास की तरह कार्य करती हैं
और हाइब्रिड इन्हेरिटेन्स हाइब्रिड इन्हेरिटेन्स में इन्हेरिटेन्स की एक से अधिक फॉर्म जुड़ी है
अब सिंगल लेवल इन्हेरिटेन्स पर एक उदाहरण देखते हैं
मैंने पहले ही एडिटर पर एक कोड टाइप कर लिया है
मैं इसे समझाउंगी
ध्यान दें हमारा फाइलनेम exam inheritcpp है
यह उदाहरण स्टूडेंट का नेम रोल नंबर और मार्क्स प्रदर्शित करना शामिल करता है
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग कर रहे हैं
यहाँ हमारे पास क्लास स्टूडेंट है
फिर हमारे पास वेरिएबल roll no और कैरेक्टर अराय नेम है क्लास स्टूडेंट के प्राइवेट मेम्बर्स की तरह
फंक्शन इनपुट और फंक्शन डिस्प्ले क्लास स्टूडेंट के पब्लिक फंक्शन्स हैं
यहाँ हम स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर स्वीकार करने के लिए इनपुट फंक्शन प्रयोग कर रहे हैं
फिर हमारे पास नेम और रोल नंबर प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन है
यहाँ हमारे पास exam inherit की तरह अन्य क्लास है
यह डिराइव्ड क्लास है
यह क्लास स्टूडेंट के डेटा और फंक्शन को इन्हेरिट करता है
फिर हमने सुब1 सुब2 सुब3 और टोटल घोषित किये क्लास exam inherit के प्राइवेट वेरिएबल की तरह
यहाँ हमारे पास पब्लिक फंक्शन्स में input exam और display exam है
यहाँ हम क्लास exam inherit को बंद करते हैं
अब हम तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्वीकार करने के लिए input exam फंक्शन प्रयोग कर रहे हैं
यहाँ तीन स्टूडेंट्स के टोटल की गणना करने के लिए display exam फंक्शन प्रयोग कर रहे हैं
फिर हम टोटल प्रिंट करते हैं
यह हमारा मैन फंक्शन है
यहाँ हम क्लास exam inherit का एक ऑब्जेक्ट ईएक्स बनाते हैं
फिर हम ऑब्जेक्ट ईएक्स प्रयोग करके सारे फंक्शन्स को कॉल करते हैं
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने कीबोर्ड पर एकसाथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेसexam inheritcpp स्पेस o स्पेस एक्साम एंटर दबाएं
टाइप करें exam एंटर दबाएं
यहाँ प्रदर्शित होता है Enter रोल no मैं 1 एंटर करुँगी
Enter Name मैं आर्य एंटर करुँगी
Enter मार्क्स ओएफ सब्जेक्ट1 मैं 60 एंटर करुँगी
सब्जेक्ट 2 में 70 और सब्जेक्ट 3 में 80 आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है रोल नो is 1 नामे is आर्य और टोटल is 210 अब हम उसी उदाहरण में मल्टीलेवल इन्हेरिटेन्स देखेंगे
मैंने पहले ही कोड टाइप कर लिया है
अपने एडिटर पर वापस आते हैं
ध्यान दें हमारा फाइलनेम multilevelसीपीप है
यहाँ हमने वेरिएबल टोटल घोषित किया है
क्लास exam inherit के पब्लिक वेरिएबल की तरह
ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स डिराइव्ड क्लास से एक्सेस नहीं होते हैं
यहाँ हमारे पास एक अन्य क्लास ग्रेड है
यह क्लास exam inherit को इन्हेरिट करता है
क्लास ग्रेड डिराइव्ड क्लास है
और क्लास exam inherit क्लास ग्रेड के लिए बेस क्लास है
क्लास exam inherit के सारे फंक्शन्स और डेटा क्लास ग्रेड को इन्हेरिट किया जायेगा
यहाँ हमने एवीजी को क्लास ग्रेड का प्राइवेट मेम्बर घोषित किया है
और फंक्शन एवरेज को पब्लिक फंक्शन की तरह घोषित किया है
फिर हम क्लास बंद करते हैं
यहाँ एवरेज की गणना करने के लिए हम एवरेज फंक्शन का प्रयोग करते हैं
फिर हम एवरेज प्रिंट करते हैं
मेन फंक्शन के अंदर हम क्लास ग्रेड का ऑब्जेक्ट जीडी बनाते हैं
फिर हम ऑब्जेक्ट जीडी प्रयोग करके सारे फंक्शन्स कॉल करते हैं
gdinput input exam डिस्प्ले display exam और एवरेज फंक्शन और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब आप देख सकते हैं कि क्लास ग्रेड डिराइव्ड क्लास है
और exam inherit क्लास ग्रेड के लिए बेस क्लास है
और यहाँ क्लास exam inherit डिराइव्ड क्लास है
और क्लास स्टूडेंट क्लास exam inherit के लिए बेस क्लास है
अब प्रग्राम निष्पादित करते हैं
अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस multilevelसीपीप स्पेस o स्पेस मुल एंटर दबाएं
टाइप करें mul एंटर दबाएं यहाँ हम देखते हैं Enter रोल no मैं 2 एंटर करुँगी
Enter Name मैं प्रथम एंटर करुँगी
Enter मार्क्स ओएफ सब्जेक्ट1 मैं 65 एंटर करुँगी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
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इन्हेरिटेन्स और इन्हेरिटेन्स के प्रकार एक नियत कार्य में एक क्लास शेप बनाने के लिए प्रोग्राम लिखें
फिर उस क्लास के लिए दो फंक्शन्स एरिया और पेरिमीटर बनायें
फिर भिन्न शेप्स जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया और पेरिमीटर ज्ञात करें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
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद